इन मूर्तियों के बाहर गेंदे के फूल भी लगाए गए है। तथा बोहोत सारी रौशनियाँ अभी लगाई गई है।

तथा एक व्यक्ति आगे खड़े होकर दुसरे व्यक्ति को कुछ समझा रहे हैं |

यह एक बांध का दृश्य है।

तथा इस दुकान का रंग लाल है।

इस सड़क पर एक व्यक्ति चलते हुए दर्शाया गया है।

यह एक कराटे का केंद्र है।

तथा नदी के सामने बड़े-बड़े पहाड़ दर्शाए गए है।

तथा कुछ गुलाबी रंग के पर्दे टाँगे गए --

बाई तरफ थोड़ी सी हरियाली दर्शाई गई है।

यहाँ पर नई ईमारत बनाने के लिए गढ़े खोदे जा रहे हैं |